यह कोई जो है जिम अं है जहां पर अ काफी अं टाइप की जो एक्सरसाइज --

मतलब यहां पर जो है चाइनीज टाइप की जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं।

लाइफ स्केल्स स्पोकन इंग्लिश के मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स यहां पर कराए जाते हैं ।

बहोत ध्यान से इन गार्डेन्स को देख रही है। गॉड गार्डन को देख रहे है कि यहां वहां पे ये किस चीज के प्लांट्स लगे हुए है?

फोटो खींच शादी में कितना सुंदर बैंकेट नजर आ रहा है कितना ब्यूटीफुल लाइट्स ऊपर लगी हुई है और--

यह देखिए किसी बहोत बड़े गुरुद्वारे की पिक नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे सीढ़ियां भी हो यह बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है और--

और भी काफ़ी तरह के यहां पर ट्वॉयज लगे हुए हैं जैसे म्यूजिकल ट्वॉयज भी यहां पर देखने के लिए मिल रहे--

यहां पे देखिए कोई खाने पीने का एक कैफे नजर आ रहा है जहां पर सामने बर्गर फ्रेंच फ्राइज की पिक लगी हुई है।

यहां पे कोई दर्शन आइसक्रीम के नाम से एक शॉप है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरी तरह के आइसक्रीम देखने को--

और अह यहाँ पर मतलब कि कोई कार्यक्रम हो रहा है।

जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर बहोत सारे बर्फ है और यहां पर जो है लोग घूमने के लिए आए हुए है कोई--

चार जो है एलईडी लाइट्स पे लगी हुई है और जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहां पर लाइट्स जो है डीजे क्लब पर आती होंगी।